बहोत ही अच्छा पेड़ पौधा देखने को मिल रहा है यहां पर एक सफेद कलर किया हुआ मंदिर भी है जिसपे --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

बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है।

बहुत ही अच्छे प्रकार से खींची गई तस्वीर है फुटकर व्यापार की दुकान है सफेद कलर किया हुआ है बहुत ही अच्छी दुकान है।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

ये तस्वीर मे बहुत ही अच्छा दृश्य सुंदर देखने को मिल रहा है यहां पर बहुत ही अच्छी प्रकार से खींची गई तस्वीर है।